यहा पे बहुत लोग भी खड़े है एक दो घर भी है और पेड़ भी है एक नारियल का भी पेड़ है खंबा है और वायर है।

मुझे यहाँ बहुत सारी गाड़िया दिख रही है जैसे की कार बाइक लाल कलर के कार सिल्वर कलर की कार.

लाल कलर का दीवाल है और लाइट चालू है यहाँ पे और एक खिड़की भी है।

और यहा पे बहुत सारे पेड पोधे और एकदम धूप है आसमान एकदम साफ है।